ए_टी_एम के अंदर लाइट भी दिख रही है और यहां लाइट गुल होने के बाद चोरी भी हो जाती हैं।

और सौ सौ का चखना ले जाते हैं एक साथ एक बार में दुकानदार को बहुत मुनाफा होता है।

ये गाड़ी है इसमें फ्लावर लगे हैं फुग्गा लगा है मेरा वाला--

यहां भोलेनाथ बैठे हैं मगर भोले दा दिखी नहीं रहा है कहां बैठे हैं नीचे बैठे हैं के ऊपर की नीचे--

और शटरे खुली है। बिंदास दुकान चल रही है। दुकानदार भी चला रहे--

यहां हम लोग आते हैं बैठते हैं गर्लफ्रेंड को भी बिठाते हैं।

और दरवाजा देख रहा वाइट है दीवाल है शटर है और नीचे खंभे दिख रहे है पीछे कुछ और रखा है समान।

एक नगीना डांस सब इसमें मिलता है।

बिंदास लेबर काम करते हैं यहां मजदूर लोग अपना पेट पालते हैं।

लोग बरात में आए है बिंदास खाना पीना का इंतजाम नहीं है मगर अभी कम है।

ये कोकार दिख रहे है कोकार की दुकान है जिसको कोकर में दाल बनाना हो आ जाना--

कुकर पे मुर्गे भी बन जाते हैं दाल भी सब्जी भी आलू भी चूर जाते हैं।

ये सिलाई मशीन है सिलाई होती है कपड़े ब्लाउज उलाउज सब सिलते है और लोग सिलवाने आते है।

पेंट चड्डी जो भी बनवाना हो संपर्क कर लो दर्जी से--